और यहाँ पर वो सभी लाइट्स दिखाई दे रहीं हैं | यहाँ पर ब्लू कलर की पिंक कलर की लाइट दिखाई दे रही हैं। रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है आसमान पूरा काला दिखाई दे रहा है।

दिवार पे ऑरेंज कलर दिखाई दे गा एक गीजर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रा । येलो दिखाई दे रहा है और बोहोत सारा सामान दिखाई दे रहा।

यहाँ पे कुछ पर्दे लगे पर्पल और वाइट कलर के नीचे ग्रीन कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है हल्का सा पिंक कलर दिखाई दे रहा हैं ग्रे कलर दिखाई दे रहा रेड कलर। --

और भी बोहोत कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर पर्पल कलर दिखाई दे रहा हैं ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहे हैं।

सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक मका दिखाई दे रहे बहुत सारे लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं बोरी दिखाई दे रही है।